और कुछ हमें पड़ी पड़ी टोप जैसे भी बर्तन दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें सात मशीन्स दिख रही हैं।

जिसके ऊपर ब्राउन एंड वाइट रंग की प्लेट्स का टाइल्स लगी हुई दिख रही है।

जिसकी नीचे बहोत ही सारी टूटे हुए--

यह कोई डेंटल हॉस्पिटल लग रहा हैं।

इस दृश्य में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एक लेबर दिखाई दे रहा है।

जिसने ग्रीन कलर की जैकेट डाली हुई हैं।

जिसमें सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हैं।

तालाब के पास में हमें एक मगरमच्छ दिखाया गया है।

जिसमें कुछ लेबर्स अपना काम करते हुएं दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें जिम एरिया दिखाया जा रहा है।

हमें बहोत सारी मशीनस दिखाई दे रही है।